यहाँ पे बहुत बड़ा सा मंदिर की शक्ल का बहुत बड़ा पूराना टाईप का घर दिखाई दे रहा है।

ये एक पार्क है जहां पे बहोत सारा बेठ ने का स्पेस दिया हुआ है।